यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है जिसके बीच में--

बगल में भी एक शॉप है और इस शॉप में चिल्ड्रंस बुक्स लिखा हुआ--

टीने की शेड लगी हुई है और लोहे का पाइप भी दिखाई दे रहा है।

यह पड़ी हुई है और वहां पे एक बाइक ब्लैक कलर की रखी हुई है।

जहां पे एक खाली स्थान है जहां--

बना रहे हैं और उसके पीछे बहोत सारे--

कवर भी रखे हुए हैं और एक दराज पर जूते का--

चित्र भी बने हुएं दिखाई दे रहे है।

एक कत्थे कलर की कालीन बिछाई गई है।

रखा हुआ है और उस पत्थर पर एक आदमी बैठा हुआ है सामने की ओर--

खड़ा हुआ है और सामने की पर एक सेड लगा हुआ है जहां पर--

कार दिखाई दे रही है जिसके सामने दो चार छे लोग--

जिसके गेट पर दोनों साइड मोर बने हुए हैं और ऊपर--

लाल-लाल कलर की चुनरिया भी लगी हुई दिखाई दे रहे हैं। ये प्लांट तुलसी के हैं।

यहां पर एक घर बना हुआ है जिस पर--

बाउंड्री लगी हुई है और सामने एक बहुत बड़ा सा लोहे का गेट भी लगा हुआ है।

यहां पर एक खाली रास्ता दिखाई दे रहा है जिसके अगल बगल कुछ गीन कलर के--